और ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है जिसमें ये गया में ज़्यादा मान्यता होता --

यह डिस्को है जहाँ पर बहुत सारी लडकियाँ आती है जो बड़े-बड़े फेमली से बिलोंग करती है वही यहाँ पर आती है।

ए भी सुविधा दी जाती है और अ यहाँ पर पेशंट को अपना फैमिली के जैसे ए बिलोंग करते हैं ये।